पिंक ग्रीन कलर के फ्लॉवर्स लगे हुए दिखाई दे रहे है और गमले रखे हुए है व्हाइट कलर के एक आदमी आता दिखाई दे रहा।

कच्चे केले दिखाई दें रहें हैं हरी धनिया दिखाई दे रहीं है और बोरियों में बहुत सारी सब्ज़ी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नव बैट दिखाई दे रहे हैं।